यह चिड़िया खाना है इसके अंदर दो --

यह एक बहुत बड़ा डैम है। इसके चारो ओर पानी ही पानी है।

देखने में काफी सु सूरत सु खूबसूरत लग रहा है।